यह एक बहुत बड़ी पहाड़ है जो की बहुत --

किसी कमरे में बहुत लड़की लोग --

योगा करते नजर आ रहे हैं।

इसके पीछे में बहुत सारे बड़े -बड़े पेड़ भी --

पानी सब बहुत अच्छे से बह रहे है पेड़ भी टिक रहे हैं।

अपने कमर में कमर बंध भी पहनी हुई है साड़ी लाल रंग की हैं।

बस को देख रहा है पीछे में भी एक लाल रंग की बस हैं।

सुंदर आकर्षित दिखाई दे रहा हैं।

उसके ऊपर में बिलासपुर लिखा हुआ है और लाइट भी बनी हुई हैं।

शिव भगवान की मूर्ति हैं।

और कुछ सड़क में भी --

जमीन में कुछ मिट्टी -मिट्टी सा दिखाई दे रहा हैं ।

और आसमान सब नीला दिख रहा हैं।

महिलाएं बीच-बीच में चल रही हैं।

अर्थात गराज है नदीम ऑटो गैरेज एंड --